फर्श पर व्हाइट कलर का टाइल्स लगाया हुआ है।

और भी बहुत कुछ लिखे हुए है और पोस्टर लगाया गया है।

यह एक कमरे का दृश्य है इस कमरे की दीवार पर व्हाइट और ग्रीन कलर का पेंट किया गया है।

यह एक बहुत बड़ा पहाड़ का दृश्य है।

उस पर गोल्डेन कलर का पेंट किया गया है और डिजाइन भी बनाया हुआ है।

यहां पर एक टेबल भी लगाया गया है जो कि ब्राउन कलर का है।